पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं लोहे के खंबे दिखाई दे रहे हैं बॉउंड्रीया दिखाई दे रही हैं कुछ घरे दिखाई दे रही हैं अलग अलग प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं।

प्रशासनिक की इमारत दिखाई दे रहा है जहा बहुत सारे शीशे की खिड्किया दिखाई दे रही है।

कुछ गाड़िया दिखाई दे रही हैं। बिजली के खंभे व लाइट के खंभे दिखाई दे रहा हैं। कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

लोहे के रेलिंग्स दिखाई दे रहे है बैठने का स्थान दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

बड़ा सा गार्डनिंग एरिया दिखाई दे रहा हैं पीछे बहुत सारे--